दो लोग खड़े हुए हैं वो अपनी सेल्फ़ी खेंच रहे हैं यहाँ पर लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही केंडल्स जल रहे हैं।

वहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के बाजू में एक बाउंड्री दिखाई दे रही है बाउंड्री में कुछ पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं कुछ पेड़ों के गमले रखे हुए भी नजर आ रहें है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही --

यहा पर एक दीवाल दिखाई दे रही है दीवाल एके थोड़ी दूर जाकर एक ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

पर पानी दिखाई दे रहा है पानी के अंदर एक हम मकान सा बना दिखाई दे रहा है जिसमें तीन फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर पर आदमी दिखाई दे रहा है। स् --